कुछ लोग अ महिला पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इसमे मुझे सब्जी का बाजार दिखाई दे रहा है।

और अ सड़क के एक तरफ कुछ अम् दुकाने लगी हुई दिख दे रही है।

जहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और सड़क की दूसरी तरफ एक कार जाती हुई दिखाई दे रही है।

लोहे की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है।

खम्भे के ऊपर एक बोट पर कोंच लिखा है।

दो चार प्लेट है और दो प्लेटों में चावल रखा हुआ हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के बोर्ड पर रहमानी ट्रेडर्स लिखा हुआ है। दुकान के अंदर लोहे की रैक रखी हुई है। जिसमे बहुत सारा सामान --

प्यानो रखा हुआ दिखाई दे रहा है। दो तिन गिटार रखी हुई भी --

दे रहे हैं। पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं। बिजली का खंभा दिखा रहा है।

इ शॉप लिखा है। मोर देन योर एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है।

इसमें एक अ बिल बिल्डिंग अंदर से दिखाई दे रही है जिसमे एक चेंबर बना है। जिस पर फोरमेसी लिखा हुआ --

बेठे हुए दिख रहे हैं। एक महिला जाती हुई दिख रही है।

दिख रहे हैं। मैदान के बीच में गोलाकार में एक गढ्ढा बना हुआ है जिसमे कि एक पानी भरा है फुब्बारा चलता हुआ।

दिखाई दे रहा है फुब्बारे के पास एक आदमी खड़ा है। मैंदान में स्ट्रीट लाईट लगी है।

कुछ नावे दिखाई दे रही हैं। नाव पर बैठे हुए कुछ लोग दिख रहे हैं।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

और यह जे_सी_बी अ गढ्ढा कर रही है और --

एक स्टोल रखा है जिस पर श्री वीर बालाजी सरकार मिष्ठान भंडार लिखा हुआ है।

इसमें एक किराने की दुकान दिखाई दे रही हैं जिसमे कि--

हिरण और हिरण के बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

बनी हुई दिखा दे रही हैं। कुछ दुकाने बनी हुई दिखाई दे रही हैं। एक बोर्ड लगा है जिस पर --

मेन्स वेयर लिखा हुआ है। उसके सामने कुछ पत-पुतले --

जिसमे बोहोत सारे टेबल रखे हुए हैं। सब उम्म सभी टेबलों के ऊपर एक-एक लेपटॉप रखा हुआ दिखाई दे रहा है।